इस तस्वीर में मुझे एक चीज की दुकान नजर आ रही है जिसपे एक आदमी बैठा हुआ है और उसके बाहर काफी सारी चीज ढकी हुई है जैसे की शैंपू --

कई सारे लोग खड़े हुए हैं एक कार के साथ कार कार काफी बड़ी और सुंदर नजर आ रही है।

कई सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है और उसके उसी के पास के आदमी के पास एक बड़ी सी चाभी भी है।

ग्राउंड के अंदर लगा रही है वह एक अच्छा कार्य कर रही है और उसे इस कार्य में सफलता मिले उसने --

की गाड़ियां व पुलिस कर्मचारी खड़े हुए हैं जो कि लोगों की तलाशी ले रहे हैं।

उसके बाहरी ओर पे एक पर्द हरे रंग का पर्दा भी लगा हुआ है और काले रंग के तार होते हुए गुजर रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा हॉल नजर आ रहा है हॉल के अंदर एक बड़ी सी घड़ी भी लगी हुई है।

और तार से भरे हुए खंभे नजर आ रहे हैं।

काफी सारे प्रिंट्स लगे हुए हैं जो कि इस क्लास को काफी सुंदर बना रहे हैं क्लास का रंग सफेद रंग का है।

एक कुंड नजर आ रहा है जिसके अंदर काफी भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है और पानी के फव्वारों --

द्वारा इसको पानी से लिया जा रहा है और इसके चारों ओर वनस्पति एरिया नजर आ रहा है।